महाजन फूल वाले पूजा भंडार --

ऊपर बादल दिख रहे है और सफ़ेद कलर खुबसारे है और ब्लू कलर का है अगल बगल झाड़ है पानी भरा हुआ है।

सताई की बाज़ार है बाज़ार में बहुत सारी दुकाने लगी हुई है।

अस बाहर छोटे छोटे घास उगी हुई हैं हुए है बिल्डिंग पूरी ऊपर से शेड डला हुआ है अगल बगल बड़े बड़े झाड हैं।

और इसमें वर्ल्ड का वो--

है और इसमें लाइटिंग लगी हुई है।

सीधे बड़ी सी इसमें अगल बगल खूब लाइटे लगी हुई हैं।

बड़े बड़े झाड़ है अशोक के नारियल के एक कार खड़ी हुई है ऑटो है।